यह एक रोड पे खड़ी है और यह रोड बहुत अच्छा है रोड के ऊपर --

गाड़ियों के टायर चिपके हुए हैं और यह ड्रम है ड्रम के अंदर कुछ भी हो सकता है।

यहां पर बहोत ही अच्छा दुकान दिख रहा है टी_वी का--

जिसके पास में एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कल्चर है बहुत ही सान--